हमने एक पार्क दिख रहा है और पार्क में कुछ झूला लगा हुआ है ठीक है झूले में एक लड़का बैठा हुआ है और अ उसमे एक लड़की भी है और साइड में एक कोको कोला का दूकान भी है जहां पर बिस्कुट कुरकुरे ये सब भी मिलते है और सामने बहुत बड़ा बाजार है।

और जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं जैसे की चूहे बिल्ली शेर --

यहाँ ब्यूटी पार्लर है और इसमें एक लेडीज का का बाल कर्ली बनाया जा रहा है। इसमें कुछ डिज़ाइन की किए हैं और उसे कुछ देर के लिए वेट कर रहे है।

और इसमें बाल के ऊपर में क्लिप लगाया गया है जो की रेड कलर का है।